बाउंड्री के अंदर कुछ पेड़ भी लगाए हुए हैं।

औरत के हाथ में फल से भरा हुआ सूप दिखाई पड़ रहा है।

यह दृश्य एक कुआं का है जो कि यह सामने से थोड़ा सा टूटा हुआ है।

उसके ब पास एक फोन रखा हुआ है।

उसके ऊपर एक येलो कलर का टॉवल डाला हुआ है पीछे एक अच्छा सा चित्र बनाया हुआ है।

यह दृश्य एक झरना का है यहां पे ऊपर पहाड़ में से बहुत सारे पानी नीचे नदी की ओर गिर रहे हैं।

ऊपर की ओर दो लाइट जल रही हैं जोकि उजले--

की ओर और बहुत सारे बर्तन दिखाई पड़ रहे हैं।

बाहर की ओर बहुत सारी बाइक लगाई हुई है।

पेड़ पर छोटी सी डाली टाइप का कुछ निकला हुआ है जिसमें पत्ते दिखाई पड़ रहे हैं जोकि हरे रंग के हैं।

ऊपर आसमान उजाला दिखाई पड़ रहा है नीचे की पानी हल्का काले रंग की दिखाइ प--

साइड में येलो कलर से पेंट किया हुआ है और उसमें डिजाइन में बनाया हुआ है।

मिट्टी का कलर भूरा दिखाई पड़ रहा है दुकान के पास एक पोस्टर टंगा हुआ है जो की उजले रंग का दिख --

टायर पे एक येलो और पर्पल कलर का प्लास्टिक चिपकाया हुआ है।

उसपे एक मार्टिन रखके जलाने वाला भी है जोकि स्टील का है।

यह दृश्य एक मार्केट का है जहां पे ऊपर का दुकान में सुनीता गवर्नमेंटस लिखा हुआ है।

नीचे भी एक पोस्टर हुआ है जिसमें पीले रंग से विनय वस्त्रालय लिखा हुआ है उसपे भी दो तीन पिक्चर्स बनाए हुए है।

पीछे एक बहुत ही बड़ा टंकी रखा हुआ है जोकि वाइट कलर का दिखाई पड़ रहा है।

ऊपर ट्यूब लाइट लगा हुआ है जो कि जल रहा है।

यहां पे बहुत सारे पिलर्स दिखाई पड़ रहे हैं साइड में कुछ पाइप्स भी दिखाई पड़ रही है जो की उजले रंग के हैं।

यह दृश्य एक किराना दुकान का है जहां पे ऊपर में बहोत सारे पानी बोटल रखे हुए हैं।

आसपास बहुत सारे पेड़ है जो कि भूरे और हरे रंग के दिखाई पड़ रहे हैं सूखी हुई झाड़ियां भी दिखाई पड़ रही हैं जो की भूरे रंग की है।

यह दृश्य एक रूम का है जहां पे एक चेयर रखा हुआ है जो की ब्लैक कलर का दिखाई पड़ रहा है।

साइड में कबर्ड में बहुत सारे सामान रखे हुए जो की बॉक्सेस में बंद है।

बैलून का कलर रेड और वाइट है और फ्लावर पिंक कलर का है।

सामने की ओर एक बॉस गड़ा हुआ है जिस पे एक चोंगा लगाया हुआ है।